ये टॉकीज के अंदर का फोटो है। फैन लगा हुआ है। डेकोरेट है वाइट और ब्लू बलून से।

पिंक कलर से भी डेकोरेट है। ब्लू कलर का कारपेट है।

ये एक किले का फोटो है जो ब्लैक हो रही है बिल्डिंग और पीच कलर की है।

नीचे घास लग रही है। कुछ पत्थर पड़े हुए हैं। पेड़ लग रहे है पीछे।

ब्लू बोर्ड पर एच.डी.एफ.सी बैंक लिखा हुआ है| नीचे ब्लू शटर है बाहर बाइके खड़ी हुई है बहुत सारे लोग हैं कुछ लोग जीने चढ़ रहे हैं।